जहाँ हॉस्पिटल के अंदर अनेक व्यक्ति महिलाएं खड़े हुए --

आई.टी.आई का है और आई.टी.आई --

चसा रखे हैं और यह मूर्ति एक --

यह दृश्य एक शोरूम का है और यह शोरूम एक --

अनेक अलग-अलग रंग की मोटर साइकिले खड़ी हैं।

प्रकार के कपड़े रखे हुए हैं जैसे बुरस्त --